इस तस्वीर के अन्दर एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जिसके खिड़की में कॉच लगे हुये है ये बहुत बड़ी इमारत है इसके बाहर--

इसके अन्दर हमें कुछ हवे‍लिया दिखाई दे रही है एक व्‍हाईट रंग की हवेली है और आगे कि और एक हवेली का काम चल रहा है जो की आधी बनी हुई है आगे की और हवेली के ऊपर एक टंकी रखी हुई है।